यहां एक हार्डवेयर की दुकान है यहां पर बहोत सारी टंकी रखी है बहोत सारी बाल्टियां रखी है झाड़ू वाइपर --

यहां पर कुछ फंक्शन होने वाला है यहां पर--

पानी देख अ उसवे एक अंकल पानी भर रहे है।